कोउ आए आप के कुछ पनि मे उतरने के लिए पनि भर हुवा है इसमे उतरने के लिए आगे कुछ लागि की-- ]

यहाँ पे एक डांस क्लास दिखाइ गई है इसमें अन्दर बहुत सारे बच्चे है बहुत सारी ओरत एक वयक्ति पीछे कांच में दिखाए दे रहे है यहां पे कुछ लाइट लगी हुए कुछ दीवारो पे डिज़ाइन वनी हुए यहाँ पे कुछ कांच लगे हुए यहाँ बच्चे नाचते दिखाई दे रहे है|

पहाड़ दिखाई गए ये इसमे बोहोत सार छोटे छोटे निचे पनि भर हुवा दिखाई गया है ।

बोहोत सर पनि म दिखाई दे रहा है पनि निचे बेहटा हुवा दिखाई दे रहे हा ।

यह पे कुक घार दिखिया दे रहे है सामने की तरफ यह पे पनि बोहोत घहर दिखाई दे रहा है ।

खुला आसमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे घर लाइट के खम्बे बस स्टैंड दिखाया गया है। इसमें बहुत सारे ब्यक्ति खड़े हुए है। कुछ ब्यक्ति बेग तांग के खड़े हुए है। बहुत सारी बसे दिखाई दे रही है।